यह तस्वीर एक बड़े गोदाम या फैक्ट्री जैसी जगह की है जहां कई लोग काम कर रहे हैं।

दुकान के पास एक लाल बल्टी और कुछ अन्य सामान रखा हुआ है।

मस्जिद की दीवारें सफेद रंग की है और उन पर सजावटी पैटर्न भी हैं।

आसमान साफ है और टावर के पीछे कुछ इमारतें दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में एक दुकान का दृश्य दिखाया गया--

फिर में एक व्यस्त मछली मार्केट का दृश्य दे रहा है।

पंप के सामने कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई है।

दुकान की दीवारे सफेद रंग की है और छत पर एक लाल झंडा लहरा रहा है।

घर की दीवारें सफेद रंग की है और फर्श पर टाइलें बिछी हुई है।

दुकान में कई तरह के कपड़े उपलब्ध हैं।

गलियारे के किनारे पर कुछ बेंच भी लगी हुई है जिस पर लोग बैठ सकते हैं।